मंदिर वो वाइट कलर का है मंदिर के जो आस-पास का डिजायन बनी गई है और वो थड़ी सी ग्रीन कलर ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में है निचे थोड़ी-सी ग्रेनरी लगाई गई है।

दुकान है दुकान के ऊपर एक फेन लगी हुई है जो कि ब्लैक कलर की है और दुकान में लाइट भी लगी हुई है और यहां पे एक वाइट और ब्लैक का कोमिनेसं में एक अ घड़ी लगी हुई है दु-दुकान का जो सीट है वो ब्लैक कलर की है और सामने एक टेबल भी र --

बाहर एक ग्रिल है बड़ी-सी जो कि ब्लैक कलर की है वो बंद है और अंदर एक फ्लैग का स्टड लग रही है जो कि रेड कलर की है और यहां पे धूप पड़ने की वजह से देखने में अच्छा लग रहा है और यहां पे जो दिवार है वो भी येलो कलर की है और यह पे कौन-सा --

इस्पे जो लिखावट हुई है वो ब्लैक कलर की हुई है यहाँ पे एक ब्राउन कलर की गेट है जो की खुली हुई है यहाँ पे लाइटए जल रही हैं उसका भी फोकस आरा है और यहाँ पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है।

आगे दुकान है जहाँ पे बहार बहोत बड़े पोस्टर लगे हुए यहाँ पर ऊपर एक लड़की की तस्वीर बनी हुई है जिसका लग रहा होंठ पे लिपस्टिक लगी है यहाँ पे बड़ी सी पोस्टर लगी हुई है जो --